ये एक मंचूरियन सेंटर है जो एक बड़े -से ग्राउंड में लगी हैं ।

जान इस पार्क मे जानवर भी है जैसे हिरन पक्षी--

ये ऑफिस बहुत ही बड़ा है।

सुडौल बनाने के लिए वर्कआउट करते है।